इस रोड पर काफ़ी सारा ट्राफिक दिखाई दे रहा है यहा पर एक लाईट का खंबा दिखाई दे रहा हैजिसमे से बहुत सारे तार जा रहे है यहा पर आसमान का रंग काफी खुबसूरत लग रहा है आसमान में घटा का मोसम दिखाई दे रहां है।

दीवार पर कुछ तस्वीर लगी हुुुई दिखाई दे रही है कुछ वाईट कलर की लाइटे लगी हुुई है पिंक कलर के पर्दे लगे हुए है एक पंखा लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर एक ब्लू कलर का स्टूल रखा हुआ है जो की लोहे का है उस स्टूल के सामने एक व्हाइट कलर का--

छत में ये ब्लेक कलर की लाइट्स दिखाई दे रही है यह जगह काफी सुन्दर है।

ओरेंज कलर की लाइट्स जल रही है जो काफी सुन्दर लग रही है यहाँ पर एक ऐ.सी लगा हुआ है ब्राउन कलर की दीवारे है कुछ टेबल और चेयर्स दिखाई दे रहे है जो लकड़ी के बने हुए है यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे है छत में कुछ लाईट दिखाई दे रही है।

ये सारी कार टूटी हुई दिखाई दे रही है जिनकी रेपेरिंग की जा रही है यहाँ पे बहुत सारी टायर पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं सामान पड़ा हुई दिखाई दे रहा है कुछ ओजार दिखाई दे रहा है यहां पर एक बाईक खड़ी हुई है।